यहाँ पर नीचे एक चटाई जैसी दिखाई दे रही है और चटाई पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और नीचे चप्पलें पड़ी हुई है।

यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने जिंस और शर्ट पहन रखी है उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है और चश्मा लगा रखा है।

और माल पटक रहे है और काफी सारा भीड़ लगी हुई है और इसपे तार बिछे हुए है काफी ज्यादा और यहां पर काफी सारे लोग है जो दिखाई दे रहे है।

काफी ज्यादा फूल ही फूल और यहां पे लाइटे लगी गई है लाइटे ही लाइटे दिखाई दे यहां अंदर काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही और कुछ लोग है जो खड़े हुए है और यह रात का नजारा दिखाई दे रहा अंदर भी भीड़ है।

यहाँ पर दो लोग है जो यहाँ पर कुछ उनके बगल मे लाइटें है और एक मूर्ति जैसी दिखाई दे रही है और बड़ी-सी लाइट दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दो लोग खड़े हुए है और यह रास्ता जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर खड़े हो के दो लोग कुछ खड़े हुए है और अंदर काफी सारे लोग है जो जा रहे है और इससे टेंट जैसा लगा हुआ है जिसपे काफी ज्यादा फूल --